साथ ही में एक छोटा सा तलाव है।

जहां पर सामने एक बोर्ड में रेल के आने जाने का और ट्रेन के नाम का बोर्ड लगा हुआ है।

ये एक इलेक्ट्रिकल सामान की शॉप है।

ये एक माता की झांकी बनी हुई है।

दो आदमी भी भगवान की पूजा कर रहे हैं।